रोड पर एक आदमी साइकिल चला रहे हैं।

यहाँ पर गड्ढा खोना जा रहा है।

और एक आदमी छाता लिए हुए है। बहुत ज्यादा धुप। यहाँ पर कुछ औरते और आदमी भी हैं। यहाँ की जगह हरी है। यहाँ घास हरे हैं और पेड़ भी हैं जो हरे हैं।